ये एक गार्डन दिखाई दे रहा है जहा पे छोटी छोटी और यहाँ पे बहुत रंग बिरंगी है पेड़ और फूल पेड़ पौधे लगये हुए है

यहाँ पे घास भी दिख रहा है एक यहाँ पे लम्बा सा सड़क जा रहा है जाह पे आ यहाँ पे पत्थर लगे हुए है| बहुत ही सुंदर लग रहे है देखने में ये के बाहर में यहाँ पे गाड़ी दिखाई दे रहे है |

फाउंटेन में यहाँ पानी गिर रहा हैं फाउंटेन से अगल बगल में यहाँ पे बहोत सारे अ ब बड़े बड़े बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं आसमान बहुत सुंदरी चमक रहा हैं।

बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है। ये इंडियन पोस्ट ऐसे लिखा हुआ है और यहाँ बहोत सारि पोस्टर लगी हुई है। यहा --